एक आदमी जरा वह बैठे हुयांषष या नजर आ रहें हैं।

और भी कई सारे इत्थे मिठाई रखी गई हैं।

और दुकान दे विच काफी ज्यादा सामान रखी हैं।

के नाम दो आदमी खड़े हुए हैं बाहर एक चेयर लगी हुई है।